नीले रंग के कार्पेट पे बहुत सारी मछलियाँ रखी हैं।

कलर वाले पताके लगे हैं सामने कुर्सीयाँ रखी हैं कुर्सियां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

टिशू पेपर है ऊपर लाइटिंग है।

पास मे नीले कलर के रस्सी पे कपड़े टंगे हुए है।

एक कमरा है कमरे की दीवारें दिख रही हैं।

दुकान और एक दुकान है दोनों के बीच में गेप है एक लाल कलर का डस्ट्बिन दिख रहा है।

एक पहाड़ी है पहाड़ी मे से झरना निकल रहा है पहाड़ी पे से छोटे-छोटे पौधे उगे दिख रहे है।

दुकान का अंदर मे कुछ समान रखा है टेबल दिख रहा है काउन्टर दिख रहा है।

एक लड़का सुअर के मुंह का पानी हाथ में ले रहा है दिख रहे है।

बर्तन की दुकान दी दिख रही है दुकान के बाहर बाल्टियाँ रखी है।

पाँच छे झंडे लगे हुए है मंदिर के बाहर एक सफेद कलर की कार दिख रही है।

एक शादी का मैरिज गार्डन दिख रहा है।